और चेयर है फोटोकॉपी की एक मशीन भी रखी है।

एक आम का पेड़ लगा है दो तीन अशोक के पेड़ लगे हैं।

केले के पेड़ भी लगे तीन चार और बाउंड्री है।

पेड़-पौधे भी है। उसके नीचे खाई भी है।

और दो तीन लोग बैठे भी हैं शायद एजेंसी आई थी गाड़ी या फिर किसी के घर आई थी।

जिसमें भी छोटी छोटी घासे लगी हुई हैं दो पहाड़ हैं।

और जो ऊपर की छत है उसमें बहोत सारी लाइटिंग है झूमर भी लगा है।

यहां पे एक तालाब नजर आ रहा हैं।

जिसके आसपास में ये बाउंड्री भी है।

और इसमें पी_ओ_पी वगैरा भी दिख रहा है ऊपर।

और यहां पे चेयर भी रखी हुई है।